टेंपू वगैरा दिखाई पड़ रहा है कुछ ठेले भी दिखाई पड़ रहे --

साइड का दीवार का कलर सफेद दिखाई पड़ रहा--

बड़ा सा लोहे का कुछ बनाके रखा हुआ है।

सामने में एक लाल कलर का रिबन लगाया हुआ है।

दीवार पर दो तीन फ्रेम भी टांगे हुए हैं।

दीवार पे दोनों साइड बैलून लगाए हुए जोकि उजले और लाल कलर के हैं।

व्हाइट कलर का शर्ट और ब्लू कलर का जींस पहना हुआ है।

इस दृश्य में एक आदमी शर्ट प्रेस कर रहा है।

वो आदमी एक हाथ में आयरन ले रखा है।

इस दृश्य में एक बस है जो कि पीले रंग का--

टी येलो और ब्लैक रंग की दिखाई पड़ रही है।

यहां से एक नदी गुजर रही है।

पीछे का दीवार में बहुत सारा तितलियां बनाई हुई है जो की कलरफुल दिखाई पड़ रही है।

जहां पे आगे फूलों से सजाया हुआ हैं।

फूलों के कलर लाल पीले दिखाई पड़ रहे हैं।

इस दृश्य में एक खेत दिखाई पड़ रहा--

इसमें हरे हरे छोट छोटे घास उगे हुए हैं।

इनका कुछ बनाया हुआ डिजाइन --

फर्नीचर में कहीं कहीं पे टाइल्स लगाया --

साइड साइड घास उगे हुए है जो कि हरे रंग के दिखाई पड़े है।

राइट साइड में स्टील का पाइप लगाया हुआ है।

पीछे बहुत सारा प पेड़े दिखाई पड़--

साइड साइड में छोटे छोटे घास उगे हुए।

दूर में दूर दूर में बहुत सारा पेड़ है जो की हरा है।

और दूसरे साइड शैंपू तेल बॉडी लोशन वगैरा रखे हुए हैं।

नीचे में एक डस्टबिन दिखाई पड़--

टेबल का रंग भूरा दिखाई पड़ रहा है।

उसके बगल में आगे में दो चेयर रखे हुए जो कि लाल और काले रंग के दिखाई पड़ रहे हैं।

साइड में कुछ पिंक कलर के कुछ डेकोरेशन किए हुए--

उसके ऊपर एक पोस्टर लगाए हो जो की भूरे--

इस दृश्य में बहुत सारे ट्रैक्टर दिखाई पड़ रहे हैं।

ट्रैक्टर का रंग लाल काला सिल्वर काला और ब्लू काला दिखाई पड़ रहा है।

उजले रंग का पोस्टर चिपकाया--

सामने में एक आदमी है जो की गेट के पास खड़ा है।

एक नील और लाल रंग के ह--

साइड में बलूंस लगाए हुए जो कि उजले और नीले रंग का दिखाई पड़ रहा है।

एक व्यक्ति पर्पल अ कलर का टी शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहना है।

साइड में बहुत सारी तार खींचे गए हैं।

पानी का रंग सफेद दिखाई पड़ रहा है और उनमें थोड़े थोड़ झाग बना रहे हैं।

यह दृश्य एक बाइक के शोरूम का है।

एक आदमी जिम कर रहा--

बगल में एक कैलकुलेटर दिखाई पड़ रहा वो भी काले रंग का दिखाई पड़ रहा--

पर्दा और लाल रंग का पर्दा लगाया हुआ--

ऊपर के छत पर रॉड निकला हुआ है जो की भूरे रंग का दिखाई पड़ रहा है।

नीचे की जमीन उखड़ी फुकड़ी दिखाई पड़ रही है कुछ टूटी फूटी।

इस दृश्य में बहोत सारे लोग दिखायी पड़ रहे--